और यहाँ पेन की बहुत सारे खोका पड़े हुए दिखाई दे रहे है यहाँ रैको पर बहुत सारी बूके रखी हुई दिखाई--

इस इमेज मे यहाँ बहुत बडी दुकान जैसी लगी हुई है। यहाँ रैको पर बहुत सारा सामान जमा हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत सारी बूके दिखाई दे रही है। यहाँ बहुत--

एक आदमी बैठे हुए दिखाई दे रहा है यहाँ बहुत सारी पेन टंगी हुई दिखाई दे रही है यहाँ कुछ गुब्बारे लगे हुए दिखाई--

यहाँ एक जिम करते हुए लड़का दिखाई दे रहा यहा काच लगी हुई दिखाई दे रही है और एक लगे हुए दिखाई दे रहे है यहा--

यहा लाईटिंग लगी लाईट बल्प लगी दिखाई दे रही दिखाई दे रही हैं दिवारो पर पोस्टर लगे हुए दिखाई--

लाइटो पे लाइटे लगी हुई दिखाई दे रही जालिया है दिखाई दे रही है यहा सब अलग अलग सिस्टम सामान दिखाई दे रहा है।

यहाँ हा नदी दिखाई दे रही है और पुल बना हुआ इस जल के उपर ब्रिज बना दिखाई दे रहा है।